इस पिक्चर में मुझे एक छोटा सा लाल कलर का घर दिखाई मिल रही है।

यहा पानी में बहोत सारा आदमी भी तैरते हुए दिखाई दे रहा है।

नदी की अंदर में बहुत सारा बरा बरा पत्थर भी दिखाई मिल रही है।

ये मुझे पानी भी सफेद रंग में भी दिखाई दे रही है।

और मुझे एक सोलर प्लेट भी दिखाई मिल रही है।

आसमान भी मुझे सफेद रंग में भी दिखाई दे रही है।

इस नदी की अंदर में मुझे बहोत बड़ा सा नाव भी दिखाई दे रही है।

यहां मे बहुत सारा बड़ा बड़ा माउंटेन भी दिखाई मिल रही है।

और इस छोटा सा घर जो इनकंप्लीट कलर का है।

इस घर की कलर जो सफेद और लाल कलर में है।

यहां में मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में बच्चों लोग का कपड़ा भी बहुत सारा लटकता हुआ रखा हुआ है।

इस घर की कलर जो सफेद रंग में है।

इस पिक्चर में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रही है।

उस नोटिस बोर्ड को पत्ता से ब्लॉक किया गया है।

आसमान भी मुझे सफेद रंग में दिखाई दे रही है।

यहां में मुझे बहोत सारा बुक्स और न्यूजपेपर लगाया हुआ दिखाई मिल रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

आसमान भी मुझे सफेद रंग में दिखाई दे रहा है।